बौंडरी भी है और लाल पर्दा लगाए हुए हैं मंदीर भी है और पहाड़ भी है जहाँ लोग आते हैं।

और अपने घर में ले जा कर दरवाजा लगाते है जिसे बंद कर कर सुरक्षित रह सके अपने घर पे--